देखेंगे की बुद्ध का उम् मंदिर है टेंपल है टेंपल के बाजू में देखेंगे कि अ घर है घर के बाजू में --

गेट हैं गेट के बाजू में पिंक कलर का पोता हुआ है एक टेबल है।

में देखने में मिल रहा है कि एक बंगला है बंग्ले में नीले कलर का पोता हुआ है सामने देखो की बहोत से जंगल लगे हैं।

पिक मे दिखने मिलेगा की एक जिम है जिम के अंदर मशीनें रखी हुई है रनिंग वाली एक--

पिक में देखने मिलेगा कि एक ज्वेलर्स की दुकान है जिसमें हर जगहो पे रिंग लाइट लगी हुई है बाजू में देखोगे की एक काउंटर में बहोत सारे--

पिक में देखने मिलेगा की बहोत सारी महिलाओं बैठी हुई हैं मंदिर के सामने मंदिर है बाजू में देखोगे बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं पेड़ के साथ साथ लोग--

और फ्रीजर मशीन में देखोगे की कोका कोला फ्रूटी स्प्राइट ऊपर देखोगे बैनर में पिज़्ज़ाओंका स्लाइस --

की परीक्षा हॉल है इसमे परीक्षा आयोजित परीक्षा स्थान लिखा है जहां देखो स्कूल है।

और कैथे कलर का है जो आजू बाजू पूरा बंद है नीचे देखो एकेक बहोतसी लकड़ियां रखी तार रखे हुए है। तार के बीच में देखो कि एक बनी--

कांच का गिलास रखा हुआ कप रखा हुआ काला कलर का दो कुर्सियां रखी है।

देख सकते हो की पिक में ये साड़ी की दुकान है कलेक्शन सानिया कलेक्शंस आप देख सक--